मुझे यहां पर आसमान दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहे है मुझे यहां पर बाइक चलाता हुआ एक इंसान नज़र आ रहा है मुझे इंसान बैठा हुआ नजर आ रहा है।